यह एक जे सी बि नज़र आ रही हैं जे सी बि का रंग पीला हैं।

यहाँ एक एस बि आई बैंक हैं इसके नीचे जनता नज़र आ रही हैं नीचे गाड़िया खड़ी हैं गाड़ियों क रंग काला हैं।

नीचे पत्थर पड़े हुए हैं।

यहाँ तीन आदमीन काम करते नज़र आ रहे हैं एक गड गड्ढे के अंदर हैं दो बाहर हैं वह मजदूरी कर रहे हैं यह अंदर--

हरा हैं अंदर साइकिल खड़ी नज़र आ रही हैं उसका रंग काला हैं।

यहाँ एक किराने की शॉप नज़र आ रही है यहाँ पर रंग-बिरंगी पन्ने टंगी हुई है एक कांच का--

आसमान नज़र आ रहा है जिसमें ढलता हुआ सूरज भी नज़र आ रहा है।

का रंग हल्का पीला दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगस दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बैंक है जिसके सामने बोर्ड लगा हुआ है इसके साइड में दरवाजा है जिसका रंग भूरा है सामने की दीवार है।

जिसका रंग सफेद है एक व्यक्ति कंप्यूटर चलाता हुआ नज़र आ रहा है सामने बोर्ड है जिसका रंग लाल है।

तरह-तरह के फूल नज़र आ रहे हैं लाइटों से सजा हुआ है सामने गुब्बारे वाला हैं जिसका रंग लाल पीले हरे गुब्बारे है।

यहाँ एक सुंदर सा अ सजा हुआ स्टेज है शादी के लिए जिसमें बहुत ही सुंदर सजावट की गई है।

अ जिसके पीछे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है।

यहाँ एक रोड है रोड पर पुल नज़र आ रहा है पूल का रंग सफेद है सामने पानी से भरा हुआ तालाब है।

के बोर्ड का रंग ब्राउन हैं अंदर सफेद रंग हैं उसमे लाल रंग से कप बना हुआ हैं।

दो कुर्सियां दिखाई दे रही है एक ब्राउन एक वाइट सामने फलों की टोकरी रखी हुई है जिनकी टोकरियों का रंग--

थोडड़ी नीले कलर का रंग भी हुआ है उसमें साइडो में दीवार है दीवार का रंग सफेद है पेड़ लगा हुआ है पेड़ों का रंग हरा हैं।

सामने पेड़ भी नज़र आ रहे हैं पेड़ों का रंग हरा है आस-पासपल के आस-पास--

यहाँ सामने पेड़ लगे हुए हैं पेड़ का रंग हरा है अ इसमें गुलाबी पीले पर्पल तरह-तरह के फूल नज़र आ रहे हैं।

पीछे कुछ कार्य कर रहे हैं यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने जैकेट पहना हुआ है जैकेट का रंग काला है।

सामने लाइट लगी हुई है सामने एक दो दीवार नज़र आ रही है जिसका रंग पीला सा है।

एक आदमी नज़र आ रहा है जिसने वाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है नीचे आसमान नज़र आ रहा है आसमान का रंग--